और यहां बादल दिख रहें व्हाइट कलर के--

प्रवेश लिखा हुआ यहां दिखाई दे रहा हैं।

साथ में हीं गाड़ियां लगी हुई है।

लेडीज इसकी टी_शर्ट का कलर हमें दिख रहा है।

जो की बोर्ड है जिसके ऊपर सेंटर लिखा हुआ--

सामने ही हमें कुछ ब्राउन कलर का फ्लोर --

यहां पर हमे दिख रहा है बड़ा सा मैदान--

कुछ व्हाइट कलर की मालाए दिख रही है।

साथ में ही कुछ लाइट्स दिख रही है और--

बड़े बड़े ग्रीन कलर के पत्ते दिख रहे हैं

सामने रेड कलर के बोर्ड पर कृष्णा ढाबा लिखा है।